जो सिक अ गेट पे सिक्यूरिटी कर रहा है और एक व्हाइट कार है जो अभी अन्दर आने वाला है और बहुत सारे कार अन्दर में खड़ा है।

यह एक घर है और घर में एक अलमारी रखा हुआ है और अलमारी ब्लैक कलर है और घर का पेंटिंग भी बहुत अच्छा है।

और नीचे पानी जमा हुआ है पानी मस्त लग रहा है दखने में और पानी मे मछलियाँ भी होती है ।

और ये नाँव में ज्यादा मज़ा आता है बैठने में और यह पर लोग के बैठता है इसमें सफर कर --

इसके बगल में अंडरवियर का मशीन लगा हुआ है और इसके अगल-बगल लाइट भी लगा हुआ है अच्छा लाइट देखे इसलिए --

और कपड़ा बन रहा है यहां पे लोहे का मशीन है एक व्यक्ति है जो जूता- चप्पल पहनें के खड़ा है और अच्छा लग रहा है देखने में वाइट कलर का शर्ट पहना है अच्छा --

एगो सी.सी.टी.वी. कैमरे भी लगा हुआ है और बस चारों तरफ बल्ब लगे हुए हैं और बेंच - उंच है देखने में अच्छी काफी काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे --

बगल में एक खिड़की है खिड़की बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और उसके बगल-बगल पूरा साफ़-सुथरा है देखने में अच्छा लग --

यह एक रोड है रोड के किनारे घास-उस लगा हुआ है और बहुत बड़ा-बड़ा पेड़-पौधे भी है।